बस स्टैंड है बहुत अच्छा है फल का दुकान भी है किराना भी है बस भी है लग रहा है बहुत बिजली की तार है तो ऊपर करना चाहिए इस्पे स्प्लेंडर भी है चभ लग से आदमी बहुत है स्टैंड लग रहा है।

यह पूजा-पाठ हो रहा है देख रहे है फल वल भी चढ़ाये है कपड़ा-वपड़ा भी है अउ बहोत सारे बच्चे भी है आदमी भी है औरत भी है।

यह देखिए भाई साहब मछली से खून निकाल के बेच रहे हैं मतलब मछली बेच रहे है और बहुत अच्छा मछली है खाना भी चाहिये।

की हम लोग भी सेल्फी खिचवालु बहोत अच्छा जगह है यार हम भी जाने का मूड कर रहा है जंगल भी मस्त है भईया मेरे को जाने का मूड कर रहा--

सुपा में समान रखे है इसमें क्या करते है नई मालूम आउ सिन्दूर विन्दुर लगाए है बहुत अच्छा लग रहा है अउ सब वापस हो रहे--

यह देखिये बूक्स बेच रहे हैं बेचना भी चाहिए शिक्षा के सामान बेचना नहीं चाहिए जैसे की देना चाहिए ।

इनका बॉडी देखिये बॉडी जितना नई फुला है उससे ज्यादा लग रहा है इनका बाल है छाती पे--

ये देखिये भाई साहब ये पुल के ऊपर खड़े है नहीं पुल के ऊपर नहीं है पत्थल पर कुछ बैठे है अउ पानी-उनी दिख रहा है हरा कलर मे अउ लग रहा है ट्रेन पार करने वाला रास्ता है की क्या है ओवरब्रिज है पता नहीं--

ये देखिये गेट है आदमी है लग रहा है होली खेल रहे है बहुत अच्छा लग रहा है क़्वालिटी गेट का बहुत अच्छा है अंदर का भी लुक हल्का-फुल्का दिख रहा है बहुत अच्छा है और भाई साहब भी बहुत अच्छे है दिख रहा है।